इस चित्र में हमें कुछ आदमी दिख रहे हैं जो पत्तियां बेच रहे हैं।

इस चित्र में हमें काफी सारा बड़ा सा एक मैदान दिख रहा है।

कुछ खिलौने नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक जगह दिख रही है काफी सारी औरतें नजर आ रही हैं।

कुर्सियां दिख रही हैं।

कुछ हमें लम्बे लम्बे पीलर जैसे दिख रहे हैं।

दूर एक कार नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक गुफा दिखाई दे रही है।

जहां मंदिरों की मूर्ति जैसी बनाई गई है।

काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक लाइब्रेरी नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं।

ऊपर हमें कांच की रेलिंग दिख रही है मॉल में शोरूम बने हैं।

आसमान में बदल नजर आ रहे हैं।

तालाब में नाव चल रही है।

कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं एक आद लड़के ने बैग टांगा हुआ है।

एक नींबू का टुकड़ा भी रखा हुआ है।

जो खुदाई कर रही है।

साइकिल और गाड़ियां नजर आ रही हैं।

काफी सारे तार नजर आ रहे हैं।

दो बड़े-बड़े टायर दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक मंदिर--

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक अलमारी में सेरेलेक्स दिखाई दे रहा है।

काफी सारे पेड़ दिख रहे है।

इस चित्र में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक जिम दिखाई दे रहा है।